ये जो अग्रवाल इंटरप्राइजेस है इसमें के अनिकेत अग्रवाल जो कि इसके प्रोप्राइटर और यहाँ पर एक --

ये हम तस्वीर देख रहे है इस तस्वीर में हम देख रहा हूँ की एक फॅमिली है जिसमे के हम यहाँ पर लाल कुर्ते में बहुत सारे लड़के खड़े है।

यहाँ पर एक पुल है जिसपे से यह एक फोटो खेंचा गया है और एक शिफ्ट गाड़ी जा रही है।

और इनके घर वाले भी इनके साथ हैं जो कि मेला दिखाने लेकर आते हैं और यहाँ पर एक ट्रेन है और पानी वाले झूले हैं।